फोटो में एक ऊपर की तरफ मूर्ति दिखाई दे रही है जिसका कलर गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है आसपास बहुत सारे परदे दिखाई दे रहे है परदों का कलर वाईट कलर का दिखाई दे रहा है।

लड़के के आसपास बहुत सरे सामान दिखाई दे रहा है और कुछ लड़के दिखाई दे रहे है जो कम करते हुए दी--

गले में माला पहनी हुई है हाथ में दुपट्टा रखा हुआ है सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर का कुर्ता पहना है ब्लैक कलर के जुते पहेने हुए हैं।

इस में बहुत सरे लोग फोटो क्लिक करवा ते नजर आ रहे है जिस के पीछे एक स्टैंड बना हुए दिखाई दे रह है जिस में शिव जी दिखाई दे रहा है हनुमान जी दिखाई दे रहा है मूर्ति दिखाई दे रही है दुर्गा जी की जिन्होंने बहुत बड़ा मुकुट लगाया हुआ है।

फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिस ने येलो कलर की टीशर्ट पहनी है और ब्लू कलर का जीन्स पहेना है।

जो रेड कलर की कुर्सी पे बैठा है सामने की तरफ ईटा राखी है इटो पे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो बच्चो के लिए है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक बड़ी ईमारत दिखाई दे रही है जो रेड कलर की दिखाई दे रही है उस के नीचे एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग कलर लाल कलर का दिखाई दे रहा है जिस में कच लगा हुआ है।

ये एक डोक्टर की क्लिनिक दिखाई दे रही है जिसमें डाक्टर दिखाई दे रहा है एक डाक्टर बेठे हुए दिखाई दे रहे है जिन्होंने पिंक कलर की शर्ट पहेनी हुए है ।